इन्होंने अपने हाथ में कैंडल्स पकड़ी हुई है।

उसके साथ ही एक हारमोनियम भी रखा हुआ है।

उसके पीछे ग्रीन कलर की क्रेन खड़ी है।

कुछ लोग स्टेज पर खड़े हैं।

चिकन बनाने के काम आती हैं।

इनके सामने काफी सारे आदमी बैठे हैं।

यह पैलेस की तस्वीर है।

इसके ऊपर दीवार पे एक आग बुझाने वाला सिलेंडर भीं लगाया हैं।

यह गेराज में एक ब्लैक कलर की टूटी फूटी बाइक खड़ी है।

ये काफी सारी औरतें--

इनके पास बैगन आलू प्याज़ काफ़ी सारी सब्जियां है।

सामने एक बाइक भी खड़ी है।

कुछ कुर्शन हर्ट शेप के हैं इसके--

उस फुटबॉल का कलर व्हाइट ऐंड ब्लैक है।

टेबल पर काफी सारे लोग बैठे हैं।